सोफा ग्रे और काला रंग का है।

यहां क्यूसेंस दिखाई दे रहा है।

यहां ब्लू और व्हाइट लाइट है।

लड़के जींस पहने हुए हैं।

यहां कैंडल भी जलाया हुआ है।

दुकान के सामने बिल्डिंग भी है।

यहां भैंस सड़क पर चल रहा है।

बिल्डिंग के सामने केले के पेड़ है।

गाड़ी के कलर रेड और वाइट है।

यहां इलेक्ट्रिक पोल्स नजर आ रहा है।